पीछे की तरफ झाड़ियां है। ऊपर की तरफ खुला आसमान है। आसमान का रंग जो है सफेद है।

फूट बाल बास्केट है| ऊपर की तरफ से खुला आसमान है| आसमान का रंग है जो है सफेद है।

और बहुत सारे पुस्तक रखे गए है ऊपर की तरफ एक बड़ा सा बोर्ड है एक आदमी बैग पहने ठहरा हुआ है

इस चित्र में एक दुकान की तस्वीर है। दुकान के ऊपर जो है लाल रंग की एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है।